सीमेंट का मैश पड़ा हुआ है जैसे सीमेंट का काम चलता हुआ --

बहौत सी सुंदर सड़क है गोदाम टाइप का है दूर की साइड में पेंट नहीं है।

लोगों से शड़क भी बहोत सुंदर है बिल्कुल बहोत शाफ सफाई दिख रहा है मुझे।

उसे पर कुछ लिखा है डाल परदोस्त पता नहीं दिख रहा है पौधे लगे हुए हैं धुप भी निकली हुई है।

एक आदमी एक दूसरे लड़के से हाथ मिला रहा है जिसने जैकेट पहना है काले कलर का पीछे एक लेडीज है जिसने --

पहन के रखा है एक आदमी मम लड़का चलता हुआ दिखाई दे रहा है मोटर-साइकिलस भी दिख रही है मुझे।

पानी भी भरा हुआ है एक छोटा सा जरा जहां से तालाब दिख रहा है।

एक माता रानी का बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिन जिसपे लिखा हुआ है श्री मकर वाहनी गंगा मैया।

ऊपर छतरी भी है डी.टी.एच की नीचे बहुत सारे छोटे-छोटे गाड़ियां एक बड़ी गाड़ी भी खड़ी हुई है।

खेलकूद का मैदान है बड़ा-सा खंबा भी दिख रहा है जैसे बी. एस. नल मोबाइल का है जो कि रहता है बड़े-बड़े सुंदर पेड़-पौधे हैं।

लाइटों की डेकोरेशन लगाया हुआ है नीचे बहौत सारी जानता है।

हैं खजूर के पेड़ रखे हैं लगे छोटे-छो --

बड़ा सा सुंदर सा ग्राउंड है हरा-हरा घास लगा हुआ है पत्थर भी पड़े हुए हैं नीचे हेल्मेट रखा हुआ है मोटर-साइकिल रखा हुआ है।

सुंदर सा शील दिख रहा है यहां पानी झरने के जैसा गिर रहा है।

मुझे एक दरवाजा भी दिख रहा है जहाँ गेट खुला हुआ है ऊपर बोर्ड